आदमी चश्मा पहने हुए है।

लगा हुआ है ऊपर।

नीचे गेट बहुत लम्बा-चौड़ा बना हुआ है ।

एक आदमी है जो टहल रहे हैं |

एक साइकिल खड़ा है एक मो स्कूटी है |

ये कोई रेस्टोरेंट हो सकता है लॉली पॉप बहुत --

दिख रहा हैं ब्लू कलर का पर्पल कलर का।

ऊपर असमान दिख रहा है एक बहुत बड़ा।

शीशा भी लगा हुआ हैं और इसके --

अच्छा लग रहा है देखने में।

ये और फल का दुकान है यहाँ पे गोबी ऊपर राइट मे र --

और सभी लोग यहाँ बैठ के अपना टास्क बना रहे।

चारों तरफ हरयाली है पेड़-पौधे हैं।

रही है यहाँ पे बच्चियाँ हैं ।

ऊपर आसमान दिख रहा है उजले कलर का आसमान है बादल --

चारो तरफ से बांस में ऊपर उड़ना करके --